एक बिजली का खंबा दिखाई दे रहा हे जिसपर तार खीचे हुए हैं।

यहाँ पर एक इ.वी. गाड़ी दिखाई दे रही है जो की सड़क के किनारे खड़ी हुई है कुछ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं पहाड़ों के बीच में से पानी बह रहा है जो दिख --

यहां पर दो पर्वत दिखाई देरन कुछ पेड़ लगे हुए है जो दिखाई दे रहे है कुछ पत्थर दिखाई दे रहे है जो पहाड़ की पहाड़ के नीचे रखे हुए है।

पत्थर दिखाई दे रहे हैं जो नदी किनारे डले हुए हैं रखे हुए हैं कुछ पेड़-पौधे लगे हुए हैं जो दिखाई दे रहे हैं पहाड़ो पर।

यहाँ पर कुछ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं कुछ पत्थर रखे हुए हैं एक के ऊपर एक पत्थर जो दिखाई दे रहे हैं कुछ बाजु में पड़े हुए हैं पत्थर जो दिखाय दे रहे हैं घास जो लगी है जो दिखाई दे रही है।

यहां पर कुछ फूल के पेढ़े लगे हुए हैं जो दिखाई दे रहे हैं कुछ घास लगी हुई है जो दिखाई दे रही है।

एक पानी का झरना दिखाई दे रहा है जिसमें पानी दिखाई दे रहा है जो कि गढ्ढे में भरा हुआ है।

यहाँ पर घर मे कुछ कुर्सीयां टेबल दिखाई दे रही हैं रेलिंग लगी हुई है जो दिखाई दे रही है बिजली का खंबा दिखाई दे रहा है जिसपे तार खिचे हुए हैं।

और एक शटर दिखाई दे रही है एक दुकान दिखाई दे रही है एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमे लाइट लसि हुई है जो दिखाई दे रही है यहाँ पर एक बल्ब अह यहाँ पर एक डोरी दिखाई दे रही है।